अ जो की बहोत अच्छा दिख रहा है यहां पे पीछे काले-काले बादल भी दिख रहे है।

इसके ऊपर बहुत सुंदर सी चादर भी रखी हुई है।

यहां पर मुझे एक बहुत बड़ा हॉल दिख रहा है।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

और मुझे बहुत सारी सीमेंट से बनी हुई सीढ़ियां भी दिख रही।

यहां पर मुझे एक बहुत बड़ा हॉल दिख रहा है।